लिबर ऑफिस में cells और शीट्स के साथ कार्य पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
रोव्स तथा columns को जोड़ना और डिलीट करना
शीट्स को जोड़ना और डिलीट करना शीट्स को फिर से नाम देना
यहाँ हम अपने operating system के रूप में gnu/लिनक्स और libreoffice version 334 का उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि spreadsheet में रोव्स और columns को कैसे जोड़ना है
चलिए हमारी personal finance tracker ods file को खोलते हैं
columns तथा rows को अलगअलग या समूह में जोड़ सकते हैं
spreadsheet में यदि एक row और एक column को जोड़ना है तो पहले cell को चुनें और फिर column और row को चुनें जहाँ आपको नई column और row जोड़नी हैं
उदाहरण के लिए हमारी personal finance tracker ods file में पहली row में कहीं click करते हैं
मैं उस cell पर click करता हूँ जिसमें cost लिखा है
अब मेन्यूबार में insert option पर click करें और फिर rows पर click करें
हम देखते हैं कि चुनी हुई row के ऊपर एक नई row जूड़ गई है
उसी तरह से एक नई column को जोड़ने के लिए मेन्यूबार में insert button पर click करें और फिर columns button पर click करें
आप देखते हैं कि चुनी हुई cell column के पहले एक नया column जूड़ गया है
जो बदलाव हमने किए थे उन्हें अन्डू करते हैं
यदि आपने अक्षर पर click करके column को या number द्वारा row को चुना है जो इसको पहचानता है फिर right click करें और एक column या row को जोड़ने के लिए नई ड्रॉपडाउन menu में से insert columns या insert rows option चुनें
वैकल्पिक रूप से cell पर cursor से click करके उसका चुनाव करें फिर right click और insert option चुनें आपको ऐसा dialog box नज़र आएगा
एक row और column को जोड़ने के लिए entire row और entire column option चुनें
एक ही समय पर विभिन्न columns और rows जोड़ने के लिए प्रारंभिक cell पर left mouse button पकड़कर आवश्यक columns और rows को स्पष्ट करें और आवश्यक cell तक ड्रैग करें
यहाँ हमने 4 cells चिन्हांकित किए हैं
rows और columns को जोड़ने के लिए बताए गए तरीकों में से किसी का भी अनुसरण करें मैं नई रोव्स जोड़ना चाहता choose इसलिए मैं चुनें गए option पर right click करके insert option चुनूँगा
अब मैं entire row option चुनूँगा ok button पर click करें देखें कि पहले चुनें गए रोव्स के ऊपर 4 नई रोव्स जुड़ गई हैं
अब हम सीखेंगे कि columns को अलगअलग या समूह में कैसे डिलीट करें
एक row या column को डिलीट करने के लिए पहले उस column या row को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं
उदाहरण के लिए यदि आप column डिलीट करना चाहते हैं जिसमें laundry लिखा है पहले उस column में एक cell पर क्लिक करके उसे चुनें
अब cell पर right click करें और delete option पर click करें
delete cells heading के साथ एक dialog box दिखाई देता है
अब shift cells up option पर click करें और फिर ok button पर click करें
आप देखते हैं कि cell shift हुए हैं और इसके नीचे के cell shift होकर ऊपर आता हैं इस बदलाव को अन्डू करते हैं
अब हम सीखेंगे कि एक ही समय में विभिन्न columns या rows को अलगअलग या समूह में कैसे डिलीट करें
उदाहरण के लिए यदि आपको row डिलीट करनी है जिसमें laundry लिखा है पहले उस cell को चुनें जिसमें उसका serial number है जो है 6
अब इस cell पर left mouse button से click करके पूरी row पर drag करें या तो उस row number पर click करें जिसे डिलीट करना है पूरी row चिन्हांकित होती है
cell पर right click करें और फिर delete option पर click करें
delete cells नामक dialog box दिखाई देगा
अब shift cells up option पर click करें और फिर ok button पर click करें
आप देखते हैं कि पूरी row डिलीट होती है और उसके नीचे वाली row ऊपर आ जाती है
उसी तरह से columns को चुनकर डिलीट कर सकते हैं जो हमने बदलाव किए उन्हें अन्डू करते हैं
sheet में कैसे विभिन्न rows तथा columns को कैसे जोड़ें और डिलीट करें यह सीखने के बाद अब हम सीखते है कि calc में शीट्स कैसे जोड़ें और डिलीट करें
calc में नई sheet जोड़ने के कई तरीके हैं एकएक करके सबके बारे में सीखते हैं
सभी तरीकों के लिए पहले step है कि उस sheet को चुनें जिसके बाद अगली नई sheet जोड़नी है
अब मेन्यूबार में insert option पर click करें और फिर sheet पर click करें
insert sheet heading के साथ एक dialog box opens होता है
अब अपनी वर्त्तमान sheet के बाद now sheet को जोड़ने के लिए after current sheet radio button को चुनते हैं
name के जगह पर हमारी name sheet का name sheet 4 दर्शाया गया है यह name system द्वारा दिया गया है आप चाहें तो बदल कर दूसरा name दे सकते हैं
अब ok button पर click करें हम देखते हैं कि हमारी वर्त्तमान sheet के बाद now sheet जुडी है
एक अन्य तरीका नई sheet जोड़ने का यह है कि calc window के बाएं ओर नीचे वर्त्तमान sheet टैब पर right क्लिक करें insert sheet option पर क्लिक करें
आप स्थान शीट्स की संख्या name चुन सकते हैं और फिर ok button पर click करें परिणामस्वरूप यह sheets जोड़ेगा
एक अन्य सरल तरीका वर्त्तमान sheet के बाद नई sheet जोड़ने का यह है कि sheet टैब के बाद दिए गए add sheet button पर क्लिक करें जिसे plus + चिन्ह द्वारा बताया गया है
इस पर क्लिक करने से क्रम में एक नई sheet पिछली sheet के बाद जुड़ जाती है
आखिरी तरीका नई sheet को जोड़ने का यह है कि insert sheet dialog box पर जाकर नीचे sheet टैब में add sheet plus चिन्ह के बगल में खाली जगह पर क्लिक करें
खाली जगह पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि dialog box दिखाई पड़ता है
आप dialog box में sheet की जानकारी enter कर सकते हैं और फिर ok button पर click करें
शीट्स को कैसे जोड़ें यह सीखने के बाद हम सीखते है कि calc में शीट्स कैसे डिलीट करें
शीट्स अलगअलग या साथ में डिलीट कर सकते हैं
सिर्फ एक sheets को डिलीट करने के लिए जिस sheets को डिलीट करना है उस पर right click करें और फिर popअप menu में से delete sheet option पर click करें और फिर yes option पर click करें
आप देखते हैं कि sheet डिलीट हुई है
एक विशिष्ट sheet को डिलीट करने का अन्य तरीका है कि मेन्यूबार में से edit option का उपयोग करें
उदाहरण के लिए यदि हमें sheet 3 डिलीट करनी है मेन्यूबार में edit option पर click करें और फिर sheet option पर click करें
अब popअप menu में से delete option पर click करें और फिर yes option पर click करें
आप देखते है कि sheet डिलीट हुई है अब document में जो बदलाव हुए है उन्हें अन्डू करते हैं
विविध sheets को shift करने के लिए उदाहरण के लिए यदि हम sheet 2 और sheet 3 shift करना चाहते हैं तो पहले sheet 2 टैब पर click करें और फिर keyboard पर shift की प्रेस करके रखें और sheet 3 टैब पर click करें
अब किसी भी एक टैब पर right click करें और popअप menu में से delete sheet option पर click करें और फिर yes option click करें
आप देखते हैं कि दोनों sheets डिलीट हुई हैं आगे सीखने के लिए चलिए हमने जो बदलाव किए है उसे अन्डू करें
मेन्यूबार से edit option का उपयोग करके एक विशिष्ट sheet को डिलीट करने का एक अन्य तरीका है
उदाहरण के लिए यदि हम sheet 6 और sheet 7 डिलीट करना चाहते हैं मेन्यूबार में edit option पर click करें और फिर sheet option पर click करें
अब popअप menu में select option click करें
dialog box जो नज़र आता है उसमें sheet 6 option पर click करें और keyboard पर shift button पकड़कर sheet 7 option click करें
ok button पर click करें यह शीट्स का चुनाव करता है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं
अब फिर से मेन्यूबार में edit option click करें और फिर sheet option पर click करें
अब popअप menu में delete option click करें और फिर yes option पर click करें
आप देखते हैं कि चुनी हुई शीट्स डिलीट होती हैं
calc में शीट्स कैसे डिलीट करें यह सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि spreadsheet को दुबारा नाम कैसे दें
यदि आप spreadsheet में देखते हैं विभिन्न शीट्स default रूप से sheet 1 sheet 1 sheet 1 द्वारा नामित हैं
यह छोटे spreadsheet में काम करता है जिसमें थोड़े से शीट्स हों लेकिन मुश्किल तब होती है जब बहुत सारी शीट्स होती है
calc हमें अपनी पसंद के अनुसार sheets का नाम बदलने की अनुमति देता है
अब उदाहरण के लिए sheet 4 का now बदलकर dump रखना है तो ऐसा आप sheet 4 टैब पर double क्लिक करके कर सकते हैं
आप देखते हैं कि rename sheet heading के साथ एक dialog box opens होता है यहाँ एक टेक्स्ट box है जिसमें default रूप से sheet 4 लिखा है
अब default name डिलीट करें और now sheet को dump name दें
ok button पर click करें और आप देखते हैं कि sheet 4 टैब का नाम बदलकर dump हो गया है चलिए sheets 5 और dump को डिलीट करते हैं
अब हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः rows और columns को जोड़ना to डिलीट करना
शीट्स को जोड़ना तथा डिलीट करना शीट्स को फिर से नाम देना
व्यापक नियत कार्य
serial number heading वाली row को चुनें और डिलीट करें sheet को फिर से नाम दें department sheet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
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं